इसकी ऊपरी सतह पर भूरी भूरी जंग नजर आ रही है।

सब अपने हाथों में एक पेन और कॉपी पड़े हुए हैं।

ये एक सजीला सा दृश्य है यहां पे रूफ पर लाइटिंग की हुई है।

नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे हरे पौधे हैं।

यहां घास में कुछ छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं।

स्टोन के कलरफुल हैं मिडिल में सबसे ऊपर परफ्यूम --

उसके अंदर एक लाल और सफेद कलर का बैरीगेट लगा हुआ है।

सामने ही आसमानी सीमेंट का बना हुआ एक पोल है।

और यहां गूगल पे पेटीएम आदि सभी व्यव सुविधाएं नजर आ रही हैं।

और उसके राइट साइड में कोटक महिंद्रा बैंक है।

कोटक महिंद्रा बैंक के आगे एक बाइक खड़ी है जो ब्लैक कलर की है।

छत में पंडाल बना हुआ है जिसमे जामनी गुलाबी और सफेद कलर की झालरों से डिजाइन बना हुआ है।

और सबसे ऊपर एक आसमानी कलर की पन्नी तनी हुई है।

आवास बना हुआ है जो सफेद कलर का पोता हुआ है।

और इसके पास में पतली पतली झाड़ियों के टाइप पेड़ खड़े हुए हैं।